यहां नम्र बिल्ली होती है यह किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदे मंद हो सकती है यहां प्रकृति के कीट नियंत्रण में--

भारतीय गैंडे को एक सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है इनका वजन एक हजार के_जी से अधिक होता--

ये एक जंगली और मांसाहारी जानवर है। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। यह भूरे रंग का होता है।

जेब्रा अपने घुटनों के जोड़ों को लॉक करके खड़े होकर सो सकते हैं।

यहाँ नम्र बिल्ली होती है यह किसानो के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकती है यहाँ--

यहां एशिया और अफ्रीका में पाया जाने वाला मांसाहारी जानवर है।